मुझे इस इमेज में बिल्डिंग दिखाई दे रही है। एक केन दिखाई दे रही है कुछ लोग दिखाई दे रहे है उम एक उम एक आदमी के हाथ में उम पंपप्लेट दिखाई दे रहा है।

मुझे इस मेज में एक प्लेट दिखाई दे रही है। प्लेट में डोसा रखा हुआ है और चटनी रखी हुई है दो ग्लास दिखाई दे रहे हैं।

येलो कलर की चड दिखाई दे रहीं हैं। डोसे ग्रीन कलर का पत्ता दिखाई दे रहा ह् ।

मुझे इस इमेज में एक लेडिस दिखाई दे रही है एक जेन्ट्स दिखाई दे रहा है ऐ.सी. दिखाई दे रही है एक बक्सा दिखाई दे रहा --

मुझे इस इमेज में एक प्लेट दिखाई दे रही है ब्लैक कलर की उसमें चवाल दाल रखे हुए सब्जी सैलेड रख सलाड रखा हुआ है जिस --

मुझे इस इमेज में कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। ऑटो दिखाई दे रहे हैं। ट्रौली दिखाई दे रहीं हैं। बैग दिखाई दे रहे हैं। एक स्टूल दिखाई दे रहा है। स्कूटी दिखाई दे रह --

ये इस इमेज में एक आदमी दिखाई दे रहा है जिसके हाथ में ब्लैक कलर की बुक है बुक पर बार लिखा हुआ है। ‌

मुझे इस इमेज में बस दिखाई दे रही है ब्लू - ब्लू कलर की सीट दिखाई दे रही हैं।